पर में तो सफेद कलर की ए_सी लगी हुई है तथा एंट्रेंस पर एक गेट जैसा बना हुआ दिख रहा है।

किसी खाली मैदान का है जहां सामने की ओर हमें ईंटों से बना ढेर दिखाई दे रहा है जो लाल रंग का है।

किसी बस अड्डे का है जहां कई सारी बसें कतार में खड़ी दिखाई दे रही हैं एवं यहां लोगों की भीड़ भी दिखाई दे रही है।

तस्वीर में एक सफेद कलर की मूर्ति बनी हुई दिखाई दे रही है जो भगवान कृष्ण की है।

तस्वीर किसी गाड़ी के शोरूम का है जहां दाई ओर दीवार पर टोयोटा का लोगो बना हुआ है तथा नीचे उसके टोयोटा लिखा हु--

इनमें से एक रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

के सामने पारदर्शी शीशा लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

टेबलों पर कई सारी चीज रखी गई है जैसे कि बैग कुछ किताबें कॉपीया एवं पानी की बोतले।

नीचे की ओर कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

पीछे की ओर एक और सक्स दिखाई दे रहा है जो अपना कसरत करता हुआ नजर आ रहा है।

भारी वजन वाले लोहे के प्लेट भी रखी हुई है सीलिंग पर एक पंखा भी लटका हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां कई सारे लोग जमीन पर बैठकर आपस में बातें कर रहे हैं।

तस्वीर में एक तालाब दिखाई दे रहा है जहां दूर दूर तक पानी ही पानी भरा हुआ है।

दीवाल पर बड़े बड़े मेनू कार्ड भी लगे हुए हैं।

एक स्टील का गिलास उल्टा करकर रखा हुआ है।

लोहे के सरिया भी लगे हुए नजर आ रहे हैं तथा एक झंडा भी लगा हुआ है दुकान के अंदर एक सफेद शर्ट पहने शख्स नजर आ रहा है।

उसके ऊपर एक महिला सफेद ड्रेस पहने खड़ी दिखाई दे रही है।

फिर किसी कार्यरत बिल्डिंग का है जहां दो शख्स सीमेंट का काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

लोहे के मोटे मोटे सरिए भी लगे हुए नजर आ रहे हैं।

यहाँ दो कार नजर आ रहे हैं तथा कुछ बाइक तथा एक साइकिल भी दिखाई दे रही है।